यहां पर एक दादा जी गाड़ी की पेंटिंग करवा रहे हैं और साथ ही साथ--

कार भी खड़ी है और एक आइसक्रीम का ठेला भी खड़ा है आदमी ने हेलमेट पहन रखा है और साथ ही साथ ब्रेड ब्लैक कलर के शूज़ पहने हैं.

पार्क में बहोत सारे पेड़ है और हरी हरी घासे दिखाई दे रही है बिल्डिंगों में बहोत सारे दरवाजे और खिड़ --

इस बिल्डिंग में बहोत सारे बिल्डिंग्स भी है बच्चे यहां पर खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।

ये वो तार हैं जो बांधे जाते हैं साथ ही साथ आपको इस दुकान में बहुत सारी चीज दिख रही है जैसे पाइप दिख रहे हैं और भी पाइप ये दिख रही है।

बेचता है और उसने एक टोपी पहन रखी है और बड़ी-बड़ी दाढ़ी है--

के साथ ही साथ कुर्सी पर वो बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा है और सूट बेच रहा है.

और फूलों को ले जा रहें हैं पैसा देकर और ये सीन बहोत ही अच्छा लग रहा हैं।

यहां पर एक दैनिक धनी कंपनी है जो की--

ये एक क्लास का सीन है यहां पर बहोत सारे टेबल लगे हुए हैं और फोटोस लगी हुई है।

यह एकहीरो होंडा की वर्कशॉप कंपनी दिख रही है.

ये गवर्नमेंट कॉलेज जसिसा रोहतक मेंटेड बाय महाराष्ट्र --

यहां एक मार्केट का सीन दिखाया गया है इसमें कई तरीके के --

और दवाइयां इसी के बगल में एक और भी दुकान इसका नाम है जिला--

यह एक गैराज है इसमें एक कार खड़ी हुई है जोकि सर्विस के लिए आई है।

और साथ ही साथ यहां पे बहुत सारे कपड़े हैं वैरायटी ना और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं.

यह एक पी_क्यू कंपनी के नाम से चल रही है।

इस वीडियो में सामने बोर्ड पे पीछे उल्टे तरफ का लिखा हुआ है और एक सामने कार खड़ी हुई है कार --

और साथ में बहोत सारी दो तीन कारें और भी खड़ी है क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रही है शीशे के आर पार।

और वह सभी को पेट्रोल या फिर इंजन ऑयल दे रहा है.

यह एक फंक्शन का सीन है यहां पर कुछ लेडिसे नाट्य कर रही हैं नाटक कर रही हैं और नाच रही हैं।

साथ ही साथ कुछ इतना अच्छा स्टेज सजा हुआ है कि देख के ही ये बहोत प्यारा लग रहा है।

पिन भी लगी हुई है जिसमें आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं एक शीशा भी दिख रहा है इसमें--

यहां पर एक मंडी है जिसमें मछलियां बिक रही है लोग वहां पर मछली देने के लिए हार--

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य लग रहा है। इसमें कुछ चेयर भी पड़े हुए हैं बैठने के लिए और दरवाजा लगा हुआ है।

फ्रिज भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं सभी लोग अच्छे से खरीदारी कर र--